इस इमेज में सामने यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग खड़े हैं और यहां पर लिफ्ट भी नजर आ रही है।

इस फोटो में सामने यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेंचेज लगी हु --

इस इमेज में सामने यहां पर एक कार दिखाई दे रही है।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

यहां पर पत्थर पर एक लड़का बैठा है।

सामने यहां पर एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुर्सी टेबल की लगे नजर आ रहे हैं ऊपर यहां पर लाइट्स भी जलती हुई --

यहां पर कुछ लोग नहा रहे है सामने एक येलो कलर का छाता भी लगा हुआ नज़र आ रहा है।

ऊपर की तरफ लाइट्स भी जलती हुई नजर आ रही--

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर --

यहां पर कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

और सामने पेड़--

यहां पर दो लड़के खड़े हुए हैं पास में एक वोट भी नजर आ रहा है और यहां पर --

और यहां पर कुछ पैसेंजर भी नजर आ रहे हैं।